आ ओइजा एगो दरवान बइठल बाड़न कुर्सिया पर। दरवान बइठल बाड़न लाइट ओइट कुल जरताटे।

यह चर्च के फादर हवे यह एकार के कपड़ा बपड़ा पहन के फादर के माला वाला पहन के स्वागत करे बांटे।